ये चित्र मा हम त एक बड़ू मैदान छ दिखेणु जख हम त बहोत सारा लोग छीन दिखेणा।

ये चित्र मा हम तें बड़ी दुकान छै दिखेणी जे की भ्वां फणी बहोत सुन्दर टाइल्स छ लगीं दुकानि का भिटर भोत सारू सामान छ दिखेणु।

यख हम त जू फल छ दिखेणा ऊं बिटि कुछ अँगूर छ कुछ लाल अँगूर छन सेब छन संतरा छन अनार छन और यख मा हम त केला भी छ दिखेणा और योंका निस टोकरी छ रखीं।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी रोड छ दिखेणी जख मा कुछ लोग छ दिखेणा। सड़की किनारा फुना बड़ा बड़ा खंबा छ दिखेणा।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ु कमरा छ दिखेंणु जफणा हम तैं बहोत सारा पिलर च छ दिखेणा यफणा बहोत सारा कंप्यूटर भी छ बहोत सारा लोग भी छा बहोत सारी मेज छा लगयां और बहोत सारी कुर्सी छा लगीं।

बाटा का ओर पोर हम तो कुछ घास और छोटा मोटा डाला छा दिखेणा और पिछाड़ी एक बाड़ू डोकरू छ दिखेणु ।

जन यफणि हम त कुछ फ्रिज छन दिखेणा कुछ कपड़ो धोणे मशीन कुछ परेश कुछ फ़िल्टर । भ्वाँ फुणि हम त बहोत सुन्दर टाइल भी छ दिखेणी जोंकु रंग सफ़ेद छ।

बिच मा हम तें एक बड़ु खम्बा छ दिखेणु अर अगाड़ी हम तें ऐक बड़ु बोर्ड भी छ दिखेणु जे कु रंग हरयूं छा अर हम तें सड़कि का किनारा एक कुड़ु भी छ दिखेणु जे का भैर बिटि एक डोखरू भी छा।

ये चित्र में हम्थे एक बड़ी ईमारत दिख्याणी जेकु रंग सफ़ेद च।

दिखेण से लगदु यमु कुछ कार्यक्रम भी छा और सड़की का बिचा हम त एक बोर्ड और कुछ फूल भी छा दिखेणा। पिछाड़ी बिटि हम त बहोत सारा डाला भी छा दिखेणा और एक बाड़ू पार्क भी छ दिखेणु।

यख फणी हम तें कुछ चणा भी छन दिखेणा और दिखेण से लग्दु यु एक दुकान छा यु कुछ बर्तन का भितर छा रख्यां उं का नीसाण हम तें कुछ अखबार छन दिखेणा।

यमणा हम तें बहोत सारी टी शर्ट छन दिखेणी जू कुं बहोत सुंदर रंग छा यखि छत फणा हम तें ए.सी भी छा दिखेणु और यख फणी बहोत सारी लाइट भी छान लगीं।

एंच फणा हम तें कुछ थैला भी छन दिखेणा छत पर बहोत सारा पंखा भी छन लग्यां दिखेण से यु कपड़ां वाला की दुकान छ लग्णी और यख मा हम तैं कैलेंडर भी छ दिखेणु।